इस चित्र में गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही हे। जो की काफी विशाल दिख रहे है।

इस तस्वीर में मछली बज़र देख--

इस फोटो के सामने के तरफ एक पद लगा हुआ है।

इस चित्र में एक काफी बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है|